ये योगा से चल रहा है यहाँ पे सभी बच्चे योगा कर रहे हैं।

जहाँ एक लड़का वर्कआउट के बाद अपनी --

तालाब के ऊपर उन्होंने प्लास्टिक के वो विचार रखे हैं वहाँ एक टेंट भी लगा है।

बहुत छोटी-छोटी हरियाली घास भी है।

माँ काली दुर्गा माँ का अवतार है|

तालाब है तालाब के आने के लिए काफी सीड़ियाँ हैं|

गाँव का जाने का मुख्य द्वार है।

जहाँ जंगली जानवर रहते हैं और शेर बाग भेड़िया --

यहाँ एक दो तीन चार पांच छः सात सात महिलाएँ --